सब लोग नए-नए कपड़े पहन के आगे से --

और देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है रोड बहुत साफ --

और एक आदमी जॉकेर बना हुआ है दाढ़ी बढ़ा के और स्टार भी देख रहा है बगल में --

अंदर के किनारे का सीन है समुन्द्र के किनारे भी पार्क बनाया गया है जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये एक घर टाइप का बनाया गया है समुन्द्र में नाव है ।

सभी लोग अपना-अपना डायरेक्शन से काम कर रहे हैं बाल्टी रखा हुआ है बोरा रखा हुआ है आगे पटरा रखा हुआ है।